यहाँ पे ओ पहाड़ की गुफ़ाएं हैं। सब कोई पहाड़ की गुफ़ाओं में घुसे हुए थे और एक लेडिज झुके हुए हैं।

एक लड़का लेटे हुए है। उसके सर के पास चप्पल रखा हुआ है और एक आदमी लेटे हुए --

यह गुलाब फूल है। गुलाब फूल लाल कलर का है और उसकी डन्तियो में काटे हैं और हरे पाते भी हैं।

और हेलमेट भी टंगा हुआ है। और एक पतला सा पेड़ भी लगे हुये है।

यहाँ पे बहोत सारे मछलियां रखे हुए हैं।